पंखा उनखा का व्यवस्था किया गया है लकड़ी का ही डिजाइन काट कर निकाला गया है और बहुत अच्छा है पर है बहुत सुंदर--

यहाँ पर घर बनने का काम चल रहा है सेंट्रिंग हो चुका है और छड़ उड़ निकल हुआ दिखाई दे रहा है और लेबर मजदूरी लगे हुए हैं।

ये एक रोड मा घर बना हुआ है होन है और लोग इधर से क्रॉस कर रहे हैं नारियल का पेड़ सारे ओर लगा हुआ है।

बहोत अच्छा हरा भरा दिखाई दे रहा है घर बहुत सुंदर दिख रहा है।

इतिहास का बुक का ई है बहुत ही अच्छा है सुपर है सुशील है मस्त लाइट बत्ती बारा गया है।